यह एक छोटा सा है जो की सफ़ेद कलर से बना हुआ है का।

और ये डांस का नाम पीस करेक्टर डांस अकेडमी नाम दिया हुआ है।

सफ़ेद रंग का पेट्रोल डला हुआ है।

एक आदमी है जो की बेच रहा है।

ये एक लड़की है जो की भरतनाट्यम डांस कर रही है इसने सफ़ेद और लाल कलर की साड़ी पेहन रखी है।

ये किसी के घर का दरवाज़ा है जहां पे थोड़े सा एक आएरा आईने लगा हुआ है एक आदमी है जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे।